और यहां पर व्हाइट कलर के टाइल बिछी हुई है।

और वह अपना काम कर रहे हैं।

इसमें बहोत खम्बो पर एक एक लाइट लगी हुई है।

आकाश भी साफ दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ी मशीन है।

इसमें भगवानों की मूर्तियां भी रखी हुई है।

और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

उन में सामान रखने के लिए दो गेट भी हैं।

और एक मेज भी लगी हुई है।

यहां पर बहुत सारे खंभे भी हैं।

और काले रंग का पत्थर बिछा हुआ है।

यहां पर तीन व्यक्ति हैं और एक मेज है।

इसमें अनेक प्रकार के खाने की चीजें रखी हुई है।

और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है और कुछ व्यक्ति उन पर बैठे हुए हैं एक पंखा भी लगा हुआ है।

इसके अंदर एक आदमी बैठा है।